एकदम लास्ट कॉर्नर पर जमीन है बहुत सारे पेड़ दिख रहे हैं।

साइड साइड पे भी डलिया रखी हुई हैं फ्रूट्स वाली।

उसके बाद थर्ड फ्लोर पर लाइट जल रही है।

एक चेयर पर वाइट कलर का टॉवल डला हुआ है टेबल है टेबल के ऊपर बॉल टाइप का घुमाने वाला रखा है।

इसमें बहोत सारे पेड़ लगे हुए है।

और विंडो वगैरा जैसा बना हुआ है साइड साइड पर।

अब इसके जस्ट बाहर एक कार खड़ी हुई है और दोनों तरफ पेड़ लगे हुए हैं।

और छोटा सा लड़का जो उस चेयर पर बैठा हुआ है और उसके बालों में क्लिप वगैरह लगी हैं।

और बस के जस्ट पीछे पेड़ दिख रहा है पि--

इनके जस्ट बगल में पोस्टर लगे हुए हैं।

इसमें एक ब्लू या ब्लैक बच्चों वाली कार खड़ी है।

ये बाउंड्री जस्ट सामने बाउंड्री चारों तरफ बाउंड्री के अंदर --

इसमें तीनों तरफ बहोत सारे टीचर्स खड़े हुए हैं।

और सामने ब व्हाइट कलर की दीवार है दीवार के पीछे बहोत सारे पेड़ है पेड़ के पीछे एक टंकी है।

पेड़ों के पीछे घर वगैरह बने हुए हैं।

शोरूम के अंदर कुछ आदमी खड़े हैं कुछ डिस्कस कर रहे हैं।

और बीच में दो लोग खड़े हैं जो एक बैग लेकर खड़ा है।

और ट्रेन की पटरियों के बीच बीच में बहुत सारी घास है।

और स्टार्टिंग में ग्रीन रेड ब्लू कलर का है और ये पूरा पर पर्पल है।

इसके जस्ट पीछे एक पुरानी सी दीवाल है।

और जस्ट सामने अलमीरा में बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं।

कुछ लोग बाइक पर बैठे हैं कुछ लोग खड़े हैं।

और कुछ लोग ऑटो रिक्शा लिए हुए जा रहे हैं।

और चर्च के पीछे घर जैसा कुछ है।

मंदिर के बाहर तीन लोगों की चप्पलें रखी हुई है।

बाउंड्री के आगे कुछ पेड़ लगे हुए है।

के बाहर एक लोहे का स्टाल लगा हुआ है।

और इसमें ये झूले लगे हुए हैं बच्चों वाले।

कुछ लोग शॉप के अंदर हैं और एक ऊपर पंखा लगा हुआ है।

सीढ़ियों के पीछे बहोत सारे पेड़ लगे हुए हैं।

घर के जस्ट बाहर चारों तरफ पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

पुरानी चीजें रखी हुई हैं अंदर म्यूजियम में।

गेट के ऊपर बालूरघाट एयरपोर्ट का बोर्ड लगा है।

जमीन पर कारपेट जैसा या रोड है।

कार के जस्ट बगल में एक आदमी खड़ा हुआ है।